कुछ डब्बा व्हाइट कलर के हैं कुछ डब्बा रेड कलर की है कुछ डब्बा ब्लैक कलर की है।

टैक्टर ब्ल्यू कलर की हैं और ऊपर त्रिपाल जैसा बनाया हुआ हैं।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

और इस पर दीवाल का पेंट है।

काउंटर पे कंप्यूटर रखा हुआ है।

यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा सा बिल्डिंग और बैंक का दृश्य दिख रहा है।

मैट पर बहोत सारे लोग हैं मैट ब्लैक कलर की है।

बगल में पेट्रोल टंकी की घरे जैसी बनाई हुई हैं।

यहां पर कई सारा कुर्सी लगाया हुआ है कुर्सी ब्लैक कलर की है।

कुछ आपस में बात कर रहे हैं और दीवाल पर कई सारा पोस्टर लगाया हुआ है।

खिड़की लगाया हुआ है बगल में एक ऑफिस रूम है।

इसमें रैक बनाए हुए हैं बहोत सारे।

कुछ रेक सीमेंट का बनाया हुआ है कुछ लोहे का कुछ लकड़ी का।

यहां पर बड़ा सा छठ घाट का प्रवेश द्वार बनाया हुआ है।

जहां पे बहोत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे है।

लाइट लगाया हुआ है बगल में कुछ सामाने लगाए--

और कुछ अल्ट्रासाउंड करने के लिए समान रखे हुए हैं।

बगल में बड़ा सा फ्रेम लगाया हुआ है उस पर भीम जी का और बुद्ध जी का तस्वीर दिख रहा है।

बीच में एक बड़ा सा टेबल लगाया हुआ है।

टेबल के चारों तरफ कुछ पुरुष लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे और आपस में मीटिंग कर रहे हैं।

यहां पर बिल्डिंग का दृश्य देख रहा है एक वैन लगाई हुई है गेट के पास।

वैन हल्की व्हाइट कलर की है गेट लगाया हुआ है।

बाइक खड़ी हुई है ब्लैक कलर का बगल में त्रिपाल से ढका हुआ है कुछ।

यहां पर मैरिज हॉल का दृश्य भी दिख रहा है।

और नीचे में आम का पेड़ लगाया हुआ है कुछ फूल पौधे हैं।

सामने गेट है गेट में शीशा लगाया हुआ है।

यहां पर जुलूस निकालने का दृश्य दिख रहा है।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

दीवाल बनाया हुआ है पत्थल का उस पर चॉक से कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर गोडाउन का दृश्य दिख रहा है।

और डिब्बा रखे हुए हैं दीवाल का कलर वाइट कलर है।

उस पर एक तौलिया बिछाया हुआ है।

सामने एक पोस्टर लगाया हुआ है बगल में एक और डॉक्टर का है जिसमें शटर लगाया हुआ है।

और यहां पे बहुत सारी ईटा का बनाया हुआ है ईटा पर कई लगाया हुआ है जो ग्रीन का है।

नदी है नदी के बीच में दो लड़के बैठे हुए हैं।

झंडा है बीच में रेड कलर का कुछ महिला ऊपर नाव --

नीचे हुए हैं दो लड़का है जो आपस में डांस कर रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा रूम का दृश्य दिख रहा है इसमें बहुत सारे स्विच बटम लगाए हुए हैं।